और बहोत सारा बहोत बड़ा मैदान भी है।

यहं फोटो एक मकान का है।

और तीन व्यक्ति खड़े हुए हैं।

एक लाल रंग का मैट भी बिछ हुआ है।

बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे भी खड़े है।

और दुकान में लकड़ी लोहे की एक बहुत बड़ी अलमारी है।

बहोत सारे गमले भी रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी रखी हुई है।

यह फोटो एक कमरे का है।

इस फोटो में दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।

और एक बहुत बड़ा मकान भी है।

इस फोटो में बहोत सारे व्यक्ति बैठे हुए है।

इस फोटो में चार व्यक्ति खड़े हुए हैं।

और कांच का एक गेट भी है।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

यह फोटो एक बहोत बड़े--